अअ एक स्टेनरी शॉप है। जिस पे श्रीहिंगलाज बुक डिपो डला हुआ है और यहाँ पर लोग कुछ शॉपे अ कुछ खरीद रहे हैं। एक लड़का है बच्चा है कुछ बाहर बैग डले ब बैट है।

मास्क लगाए हुए चोकलेटी कलर की धरती है । सामने सफेद कलर की बिल्डिंग है खिड़कियाँ दिख रही है पीछे पीले कलर का बेनर दिख रहा है ।

अअ एक चड्ढा पहने हुए चेक का और उसने पैर डाले हुए पानी मे और पानी की तरफ देख रहा है सामने की अ पानी की लहरे आ रही है।

स्टेज है। उस स्टेज पर कुछ अ बच्चे बैठे हुए हैं। कुछ हाथ में लिए पेपर वर्क है।

एक रेड कलर का बैनर है उस पर डायरी डे लिखा हुआ है। एक बिल्डिंग है उसके नीचे कुछ प --